यहां एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर रांची सेंट्रल लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारी रैक बनी हुई है जिनमें अलग अलग खिलौने और कुछ सामान भी रखे हुए हैं।

यहां गमले में हरे पौधे लगाए गए हैं।

यहां कुछ झंडे भी गड़े हुए हैं।

यहां काफी साफ सफाई है।

यहां अलग अलग जगह पर प्राइस टैग भी लिखा हुआ है।

बिजली के कुछ तारे यहां से निकली हुई है।

यहां बहुत सारे कुरकुरे टंगे हुए है।

यहां एक बहोत सुंदर मोर दिखाई दे रही है यह काफी खूबसूरत है।

यहां कुछ बल्ब जल रहे हैं।

यह एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे जिम इक्विपमेंट लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारी बल्बें जल रही है।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

यहां एक इंसान बड़ा कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यहां बहुत सारे हरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

सामने एक रास्ता निकला हुआ है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही है।

यहां दो पोस्टर में अपना सुपर मार्ट और चुंग्स चाइनीस ट्रायल लिखा गया है।